यहाँ पर एक खुली जगह है खुली जगह में सामने बॉउन्ड्री वॉल दिख रहा है।

तालाब पूरा पानी से भरा है|

यहाँ एक मेलन हो रहा है।

यह बहुत बड़ा-सा मैदान है| मैदान में हरी-हरी घास उगी हुई है।

ट्रक की खड़ी है।